ये एक सैलून है सैलून में बार्बर मेन बाल काट रहा है।

इसमें सैलून देख रहा है मुझे--

ब्लू कलर का पानी है यहां ऊपर पाइप से पानी छिड़क रहा है छोटा छोटा सा।

ये ए_पी_एस_टी बस स्टैंड है जहां पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस खड़ा है।

सैलून है जहां बाल काटते है जिसमें दो चेयर रखा हुआ है दो सोफा --

और आगे का लड़का ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहना है उसका सामने वाला ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना।

और नीचे टाइल्स लगा हुआ है और दरवाजा खुला हुआ--

ये गोहपुर आसाम का रेलवे स्टेशन है जहां पर कस्टमर चल रहा है अभी पीछे स्टेशन का फोटो है जहां प साइन बोर्ड लगा हुआ हैं गोहपुर।